कई व्यक्ति बेच भी रहे हैं सब्जियां कई बाइके खड़ी हुई हैं।

यह एक बहोत बड़े मार्ट नजर आ रहे हैं दुकान जो की बहोत बड़े रहते हैं यहां।

यह एक निशान कॉलोनी नजर आ रहे है जो बहोत बड़े हैं यहां साइड में हरे भरे पेड़ पौधे भी--

बड़ा सा हॉल है किंतु कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं।

यह कुछ मैदान नजर आ रहे हैं।

उन किए हुए हैं पेड़ पौधे हैं हरे भरे।

फ्लावर्स भी लगे हुए हैं कई कलरों के--

यह एक विशिष्ट रूम दिखाई दे रहे हैं यहां।

दो तीन लड़के बाहर में हैं एक लड़की और एक लड़की अंदर में हैं पत्थरों से बना हुआ यह गुफा दिखाई दे रहे हैं।